और इस दुकान में कुछ सब्जियां भी हैं।

और इस स्टेज में एक सोफा रखा हुआ है।

उस पेड़ के पास झाड़ियां लगी हुई हैं।

और उस अलमारी में नीचे की तरफ दो लाइट है।

और कुछ आदमियों के हाथ में लोटे हैं।

और इस दुकान में कांच का काउंटर है।

और इस दुकान में चार कुर्सियां रखी हुई है।

और उन पेड़ो पर एक रस्सी लगी हुई है।

और इस ऑफिस की दीवार पर दो एल_सी_डी है।

और इस लेंटर में कुछ सरिये लगे हुए हैं।

और इस जिम में कुछ लड़के जिम कर रहे है।

और उस काउंटर पर कुछ बोतलें धरी हुई हैं।